ये शादी का स्टेज है यहाँ वर और कन्याएँ--

लिखा हुआ है ये बहोत अच्छा दिख रहा है और कुछ उस बस के आगे एक मंदिर मस्जिद है जहाँ दो तीन बस --

यहाँ एक पार्क है जहाँ सब कोई घूमने के लिए आता और ये यहाँ एक बैठने के लिए एक जगह भी है।

ये एक स्कूल है स्कूल का क्लास रूम है जहा क्लास रूम में बच्चे सब अपने अपने जगह पर बैठकर--

कार्यालय व्यवस्थापक टेम्पल स्टेट जगदलपुर ब बस्तर छ. ग. दूरभाष है।